कूड़ा भी पड़ा हुआ है एक रोड निकल के जा रहा है जिसमे एक बड़ी-सी बस है और उस बस के पीछे काफी सारे मकान भी नजर आ रहा है एक बिजली का खंभा भी यहाँ पर दिख रहा है।

इसमे एक गाड़ी है जो फॉर व्हीलर है जो दो रंगो मे पोती हुई है कुछ यहाँ पर बोर्डस भी लगे हुए है हिन्दी मे कुछ लिखा है।

तस्वीर किसी म्यूजियम की है जिसमे एक बड़ा-सा शोकेस है।

काफी सारे केबिन्स बने हुए हैं लकड़ी के डार्क ब्राउन कलर में और यहाँ पर काफी सारी चेयर्स भी नजर आ रही हैं।